जहां पर एक वाइफ एवं एक हसबैंड है।

तथा बहुत सारे आदमी उ झूले पे--

एवं यहां पर बहुत सारे रेलिंग लगा हुआ है।

एवं ऑटो का कलर रेड एवं ब्लैक है।

तथा साइड में एक स्कूटी है जिसका कलर ब्लू है एवं यहां पे बहोत सारे सीढ़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

एवं ऊपर में बहुत सारे तार लगे हुए हैं तथा यहां पर एक आदमी गमछा को सर में लपटे हुए हैं।

एवं यहां पर एक टी_वी भी लगा हुआ है एवं दीवार का कलर भूरा एवं व्हाइट है।

तथा यहां पर स्टेशन को रेड एवं व्हाइट कलर से पेंट किया है।

एवम यहां पे लोहे के मदद से गेट को बनाया गया है।

तथा ऊपर में बहोत सारे लोहे की मदद से विंडो एवं बहुत सारे खिड़कियां बनाई गई है।

जिम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इसमें लिखा है व्यायाम मसाला ओ ओम ओपन जिम ।

यहां पे एक स्कॉर्पियो दिख रहा है तथा स्कॉर्पियो का कलर भूरा है।

हा यहां पे नीचे में बहोत सारे आदमी आए हुए हैं तथा यहां पे बहोत सारे सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

तथा यहां पर गेट को कांच के मदद से बनाया गया है।

यहां पे एक आदमी भी है तथा साइड में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

उसपे बहुत सारे कॉपी एवं बुक एवं पेन पेंसिल बहोत सारे सामान रखे हुए है।

एवं नीचे में बहुत सारे दुपट्टे को लगाया हुआ है।

तथा मशीन का कलर हरा है एवं मशीन को लोहे की मदद से बनाया गया है।

यह एक दुकान का अंदर का दृश्य है जहां पर आलमारी को प्लाई की मदद से बनाए गए है तथा आलमारी का कलर भूरा एवं व्हाइट है।

नीचे में बहुत सारे बोतल में भी सामान रखे हुए हैं।

एवं कुछ आदमी बहोत सारे बैठे भी हुए हैं कुछ आदमी खड़े भी हैं।

एक रूम का दृश्य है जहां पर बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं एवं यहां पर बहुत सारे लेडिस एवं जेंट्स भी दिखलाई दे रहे हैं।

तथा यहां पर एक पंखा भी दिखलाई दे रहा है।

जंगल का दृश्य है जहां पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

एवं साइड में ब्लू कलर का कुछ दिखाई दे रहा हैं तथा नीचे में भीं कुछ समान भीं हैं।

गाड़ी का दृश्य है जहां पर एक बहुत बड़ा गाड़ी दिखाई दे रहा है तथा गाड़ी का कलर हरा है।

तथा होटल का कलर व्हाइट एवं भूरा है।

जो की येलो कलर का है तथा यहां पर टेबल के पास बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं।

तथा यहां पे बहुत सारे लड़कियां एवं लड़के भी हैं।

एवं नीचे में लिखा नीचे में एक दुकान है जो की बहुत सारा सामान उसमें टंगे हुए हैं।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

एवं एक पोस्टर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स रांकराज कंपलेक्स ।

तथा गेट को लोहे के मदद से बनाया गया हैं एवं गेट में कुछ फिगर भी लगे हुए है।

तथा यहां पर बहुत सारे बेंच भी है एवं उसमें बहुत सारे महिला एवं जेंट्स भी दिखाई दे रही है।